बोत सारे घास या फिर पड़ी है जिसे बकरी बच्चे खा रहे हैं और यहाँ पर --

यह एक कफ्फो की दुकान है यहाँ पर चाय के कफ कॉफी के कफ का --

ऊपर एक पहिया सा बन रहा है और लाइटे लग रही हैं काफी सारी और साइड में कुछ पेड़ हैं हरे हरे।

दो तीन मंजिल ऊपर दुकाने हैं जो ओप्पो की कैमरा --

कैमरा फ़ोन लिख रहा है और यहाँ पर ओप्पो की कंपनी की ऐड हो रही है और यहाँ पर काफी सारी बाइकें हैं।

मशीन को आगे पीछे कर रहा है। जिसमे अपनी --

कुछ लड़के फील्डिंग कर रहे हैं और दो बेट्समैन और एक बॉल एक --

यह एक चंपू सा लड़का है। जिसने अपने गले में रुमाल डाल रखा है और --